और दीवार को बहुत सारे कलर से पेंट किए गए हैं।

और बगल में बहुत सारे कूट के डब्बे दिखाई दे रहे है।

यह दुकान का दृश्य है और दुकान में बहुत सारे कपड़ा रखे हुवे हैं।

और बगल में खिड़की दिखाई दे रहा है खिड़की का दरवाजा दिखाई दे रहा है जो कि लोहे का है।

यह एक रूम है और रूम में बहुत सारे कुर्सियां दिखाई दे रही हैं और टेबुल भी है।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

एक के हाथ में कुदाल भी है और बगल में बोड़ा रखा हुआ है।

सामने सीढ़ी भी दिखाई दे रहा है जिसमें रेलिंग लगाया हुआ है।

और ऊपर बादल दिखाई दे रहा है।

और बाहर लाइट भी लगाए हुए हैं और सामने एक हेलमेट रखा हुआ है और गाड़ी भी खड़ी है।

बाइक भी लगाए हुए है और पीछे एक टावर भी दिखाई दे रहा है।

और पीछे बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे खिड़कियां दिखाई दे रही हैं और गेट भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे पौधे भी लगाए हुए है।

और बैठने वाला बनाया गया है और बहुत सारे घास दिखाई दे रहे हैं और लाइट भी लगाया हुआ--

दृश्य में बहुत सारे खेत दिखाई दे रहे हैं और खेत में बिहन किया गया है।

यह एक दुकान है और दुकान में दो आदमी खड़े है।

पीछे गेट दिखाई दे रहा है जो कि शीशे का है और ऊपर बहुत सारे लाइट जल रहे हैं।

दृश्य में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और एक बाइक भी खड़ी है जिसका सीसा दिखाई दे रहा है।

और बाहर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और बैठे हैं।

और पोस्टर भी लगाया हुआ हैं।

घर में खिड़की भी दिखाई दे रहा है।

लोहे का पाइप भी दिखाई दे रहा है।

बगल में टायर भी दिखाई दे रहा है।

और गाड़ी भी लगाई हुई है।